और यहाँ पे हमे कुछ अ गी-ग्रिल जैसा कुछ नजर आ रहा जहा पर एक साइड मे लेडिज चलती हुई नजर आ रही है ।

अगर हम बात करे तो यहाँ पर हमे देखने को मिल रहे है अ बोहोत बड़े-बड़े से अ पत्थर और हमे कुछ पौधे ग्रीन ग्रीन देखने को मिल रहे है घासे भी है ।

ऊपर की तरफ हमे खुला आसमान देखने को मिल रहा है और बादल आगे के तरफ जाते हुए नज़र आ रहे--

--मे हम एक जमीन को देख पा रहे जहाँ पर कुछ मशीन और कुछ कर्मचारी वगैरा है और वहाँ पर सरिये रखे हुए है जिसको बांध रहे कुछ मजदूर वगैरा--